ये पोलिस वाला पोलिस यहाँ पे योगिंग करते हैं और यहाँ पे बादल है। बोहोत सुंदर-सुंदर चीज़े लगी हैं। अंदर बोहोत अच्छा लग रहा है। कितनी सुंदर सुन्दर चीज़े हैं।

एक अंकल जी अपनी कार देखने आए है और उस पे वो लोग देख रहे है। क्या कहते है कार है। बहुत अच्छी लग रही है। साफ़ हो गयी है। सही कर रहे है वो।